यख पंखा भी छन लगयां यख मा जी एक लाल रंग कु टिन कु छप्पर छ लग्युं यख मा जी कई सारी खिड़की छन यख कई लोग आयां भी छन।

यख मा जी लोहा की कुर्सी लगीं छन यख मा जी हरी भरी झाड़ी छन हरी भरयां पौधा छन।

यख मा जी लाइट भी छन लगीं यख मा जी एक मकान छा यू पीला रंग कु छा येका एंच लाल कलर कु टीन कु छपर छा यख मा जी कुछ लोग भी छन फण कुछ दुकानि भी छन।

ये स्कूल मा जी कई सारा कमरा छन कई सारी खिड़की छन कई दरवाजा छन य पर पीलू लाल रंग होयुं चा यख मा जी बिजली कू तार भी चा यख चारों ओर हरयां भरयां डाला छन।